ये हमारे लिए फल फ्रूटस् की दुकान दिखाई दे रही है यहाँ पर ब्लैक कलर की अंगूर-- अंगूर रखे हुये हैं और कोई अंगूर रखे हुए केले रखे हुए है संतरे रखे हुए है अनार रखे हुए है सेब रखे हुए हैं और ये-- ।

यहाँ हमे-मे केले कुछ फल फ्रूट का मार्केट दिखाई दे रहा है यहाँ पर बोहोत सारे फल फ्रूटस रखे हुए दिखाई दे रहा है अच्छा बिल्डिंग मे भी बनाया गया है उसके शोकैस लाइट भी लगाया गया है दुकान के अंदर भी कुछ व्यक्ति सामान देने के लिए कुछ व्यक्ति--

एक बहोत अच्छा पार्क दिखाई दे रहा है यहाँ पर बहुत अच्छी लाइट लगी हुई है पानी का भी वहाँ पे बहने के लिए बनाया गया है बहुत ही अच्छा नजारा देखने को मिल रहा है बहोत अच्छी सुंदर-सुंदर पेड़ पौधे दिखाई दे रहे है।

मेरे को बहोत सारा समान दिखाई दे रहा है बस स्टैंड दिख रहा है हाईटेक बस स्टैंड बिलासपुर दिखा लिखा हुआ दिखाई दे रहा है एडमिशन ओपन यहाँ पर एक दुकान भी रखी हुई है गेट भी बना हुआ है बहोत सारी टैक्सी भी दिख रही है वाइट कलर की बस दिख रही है।

पीछे बहोत सारी बिल्डिंग्स दिखाई दे रहीं हैबहोत सारे हरे-हरे भरे-भरे पेड़ दिखाई दे रहे है बादल भी दिखाई दे रहा और भी बहोत अच्छा नजारा यहाँ देखने को मिल रहा है।

मेरे लिए बहुत चीज़े अ मॉल दिखाई दे रहा हैं यहाँ पे बहोत सारे कपड़े रखे दिखाई दे रहे हैं कुछ व्यक्ति भी अंदर दिखाई दे रहे हैं।

डाकघर एक ऐसी चीज है आदि हमे एक जगह से दूसरी जगह कोई वस्तु या चीज सामग्री भेजनी हो या कूरियर द्वारा अप्लाइ करनी हो तो वहाँ से आ सकती है और कूरियर द्वारा हमारे पास भी कोई ऑर्डर आ सकता है जैसे --